और बडे से पेड़ दिखाई दे रहे है जो बहुत घने है।

छत बनी है और सामने कांच के --

यहाँ पर बहोत घना सा जंगल दिखाई दे रहा है जो बहोत बड़ा है।

सफ़ेद कलर के छोटे - छोटे बल्ब जले हुए दिखाई दे रहे है और सामने मेन्स पार्लर लिखा हुआ है।

यहाँ पर मछलियों की दुकान दिखाई दे रहै है जहाँ पर बहोत सारे मछलियाँ रखी हुई हैं।

यहाँ पर फूलों की माला दिखाई दे रही है जो सफ़ेद है और लाल फूल --

यहाँ पर एक काँच का दरवाजा लगा है जिसपे कुछ पेपर --

एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ है बेलन रखा हुआ है रोटी बनाने वाला गोल सर्कल बना हुआ है।

यहाँ पर एक लोहै का बड़ा -सा गेट दिखाई दे रहा है जिसपे --

दुकान लगी है जहाँ पर हरी सब्जी रखी हुई है दो गुलाबी कलर की बॉउल रखे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर किताबों की बहोत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।

रोशनी आ रही है और रोशनी पीले कलर की दिखाई दे रही है एक लकड़ी का दरवाजा लगा हैं।

बिम्ब बने हुए हैं यानि के खम्बे और एक--